दिखाई दे रही है और निचे मैं यहाँ पे अ ऑटो और यहाँ पे दो बाइक दिख रहे हैं।

यह जगह बहुत ही सुंदर लग रहे है यह शायद गोवा की तस्वीर है जहां पर यह है बीच के ऊपर में एक नाव चल रहा है और यहां पर बहुत सारे यहां पर नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे --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

और यहाँ पे ड्रॉवर भी बने हुए हैं और यहांपे बहो डेस्क में बहुत सारे सम्मान यहां पर रखा हुआ है।

यहा पे बहुत बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और यहा पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और यहा पे गेट का रंग यहा पे व्हाइट कलर का है बाहर मे यहा पे कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है।

इसमें एक काले रंग का गेट दिख रहा है और यहाँ पर बहुत सारी सीढिया दिखाई दे रही है। बहुत सारे यहाँ पे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। यह चर्च का रंग यहाँ पर पूरा सफेद रंग का है।

ये एक सलॉन है सलॉन में यहां पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं और यहां पे यह सलॉन शायद न्यू ओपनिंग हुआ है बहुत सारे यहां पे --

यह गुफा दिखाई दे रहे है जहां पर बहुत बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है और यह बहुत ही ऊंची यह गुफा है और यहां पर बहुत सारे रिबिन्स लगा हुआ है यहां पर बहुत अंधेरा यह गुफा जा रहा है जो जहां पर बहुत सारे काले पत्थर दिखाई दे रहे है।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

हा ये कोई फ़ैक्टरि दिखाई दे रही है ये कोई कन्स्ट्रकशन एक बिल्डिंग बन रहा है जिसके बाहर मे यहाँ पे बहुत सारे पत्थर ईटा और यहाँ पे रखे रखा हुआ है।

यहाँ पे एक चर्च दिखाई दे रही है जहा पे बहुत सारे यहाँ पे आ बलून्स सजा हुआ है और यहाँ पे रिबेनसे भी सजा हुआ है और कुछ ब्लू ब्लूका--

गाड़ी की सर्विस सेंटर है जहा पे अपना सब जगह गाड़ी घूमाके यहा पे धुलवाने के लिए सब आते है आ यहा पे बहुत सारे --